देखने में बहुत खूबसूरत है ।

देखते हैं की झरना लगा हुआ है।

ये बहुत अच्छे होते हैं रक्त दान देना किसी की ज़िन्दगी बचती है।

उठाया गया है जिसे रिपेयरिंग कराने के लिए लाए है ।

झूला है जिसको ट्रॉली बोला जाता है। नीचे से ऊपर ले जाने में काम आता है और यहां बैठने पर बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा है।

अंगार जिसे दिख रहे हैं कुछ लड़कों घूमने आये हैं यहाँ पे और एक लड़के सामने ऊपर में दिख रहे हैं नज़ारा बहुत अच्छा है।

और जिम जाना बहुत अच्छे होते हैं सबको जाना चाहिए ।